यहां पास बहोत सारी छोटी छोटी घास उगी हुई हैं।

यहां पर बहोत सारी दुकानें बनी हुई हैं यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं।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

और काली कलर की मार्बल्स यहां लगाए गए हैं बाहर एक डस्टबिन रखा हुआ है।

साथ में अंदर बहोत सारी वायरिंग रखी हुई है कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं चारों ओर--

बहोत सारे बच्चे कप बॉक्स से खेल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं सारे बच्चे नीले कलर की ड्रेस पहने हुए हैं यहां बस कुछ बच्चे लाल रंग की ड्रेस पहने हैं।

यहाँ बस एक हाथी दिखाई दे रहा हैं हाथी के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ हैं।

साथ में यहां पर बहोत सारी घास उगी हुई हैं यहां पास बहोत सारी कार खड़ी हुई हैं।

यहां पास एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जहां पास दवाई लिखा हुआ है दो सौ प्लस के आइकन बने हुए हैं।

लोग खड़े हुए है और यहां पास एक बाइक खड़ी हुई है बाइक के पास में कुछ लोग--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

फोटो लगी हुई है साथ में यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पास बहुत सारे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है साथ में यहां पास कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पास बहोत से लोग बाहर बैठे हुए हैं।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

खंबा गड़ा हुआ है खंबे के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां पर बहोत सारे बच्चे झूलों के ऊपर झूल रहे हैं।

पाईप लगे हुए है साथ में यहां पर बहोत से लोग बैठे--

इस फोटो में मुझे बहोत सारी गमले पर और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां पा बहोत सारे लोग--

लोग बैठे हुए हैं साथ में यहां पर बहोत सारी--